और खिड़की है काले रंग की सीलिंग पर फैन लगे हैं काले रंग के ए_सी लगी है सफेद रंग की।

बड़ा सा रूम है उसमें पिज़्ज़ा अमूल करके बना हुआ है एक पोस्टर लगा है।

इसकी दीवार पर चॉकलेटी ईंट का डिजाइन बना हुआ है और ऊपर--

कुछ फ्रेम लगे हुए है और सफेद रंग की लाइट जल रही है।

एक टिशू पेपर बिछा है वो ब्लू रंग का है इस पर मशीन लगी मशीन रखी है पीले काली रंग की।

और कुर्सी पर काला और चॉकलेटी रंग लगा हुआ है एक शेड बना हुआ है उसमें खंबे लगे हुए लोहे के--

चॉकलेटी रंग की मिट्टी है और बहोत सारे लोग हैं वो लोग उन्हें सफेद रंग के--